हॉस्टल लाउंड्री रिटेल लाउंड्री लाउंड्री क्लीमिंग टीम ऑइरण --

लिखा हुआ है यहाँ फैन दिख रहा है एक फ्रिज है।

यहाँ पे मैरिज हो रहा है जैसे लग रहा है एक लड़का है जो दूल्हे के गिटअप में खड़ा है जिरवानी पहना है पगड़ी लगाया है।

है बहुत सारी तारे हैं और एक घर है और बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी हैं दूर-दूर में और भी बहुत सारे खधे सारी हरे दिख रहे हैं।

और खाते है यहाँ पे शेफ लोग रहते है जो खाना बनाते--